सीलिंग से लटके हुए विकर डिजाइन के वॉर्म लाइट्स दिख रहे हैं।

वहा काउंटर पे स्ट्रॉ काकटेल शेकर और कुछ कुछ बार टूल्स रखे हुए हैं।

फेसबुक बास्केट गीजर का कार्टून टेबल पर रखे हुए हैं।

पीछे वॉल के साथ योगा में अलग अलग रंगों में स्टैक है।

इस साइट पर एक्सेप्शन एरिया है जहां एक काउंटर पर एक प्रोजे स्टैंड दिखाई दे रहा है।

पीछे कुछ लकड़ी और घास से बने हुए झोपड़ियां हैं।

काउंटर पर दो सिंक लगे हैं रेड कलर के प्लास्टिक रैकस में अलग अलग तरह के हेयर प्रोडक्ट्स और स्टाइलिंग टूल्स हैं।

एक छोटा सा दुकान है जिसके छत टीन का है और लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं।

दुकान के बाहर और अंदर कई सारे सामन लटक रहे हैं।

जमीन पर बड़े बड़े प्लास्टिक के बैग्स में छोटी छोटी मछलियां भरी हुई है।

दो व्यक्ति झुक कर मछलियां बेच रहे हैं और आसपास कुछ लोग खड़े होकर मछलियां देख रहे हैं।

पीछे कई साइकिल खड़े हैं कुछ लोग बैठ कर या खड़े होकर बात चित कर रहे हैं।

एक लाल कलर का फ्रिज भी दिख रहा है।

आगे का खुला स्पेस में काले रंग का दो प्लास्टिक रखे गए हैं।

कार्टून के ऊपर एक स्टील की गास और लाल रंग के कपड़े भी रखे हुए हैं।

बड़े बड़े पिलर्स हैं जिन पर अलग अलग एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स लगे हुए हैं।

पास में एक सफेद रंग का ट्रायंगुलर प्लांट स्टैंड है जिसमें कई पौधे लगाए हुए हैं।

ये इनडोर में जिसमें सफेद दीवार पर अलग अलग पेंटिंग और डेकोरेशन लगाए गए हैं।

बैकग्राउंड में कुछ ऑटो रिक्शा भी दिख रहे हैं।

घना छोटी छोटी झाड़ियां और उनके बीच पत्थर की फुटपाथ बनी हुई है।

ऊपर छत पर क्रॉस का निशान बना हुआ है।

एक नाँव पर लाल रंग का झंडा भी दिख रहा है।

सामने के हिस्से में कुछ लोग जमीन पर खड़े हैं और कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं।

बिल्डिंग के सामने एक कच्चा मैदान है जिसमें कुछ कचड़ा बिखरा हुआ है।

एक छोटा बैम्बू का फैन्स भी बना है।